ये एक दवाई की दुकान है।

यहाँ पर बहुत सारी दवाईंयां और टुबस रखे हुए है।

पानी बहुत साफ़ है और यहाँ पे दो तीन लोग ही नज़र आ रहे है।

लड़का स्टूल के पास सफ़ेद कलर के डिज़ाइन में बैठा हुआ है और एक लड़का --

फेट भी दिखाई दे रहा है केनाल के अंदर पानी भी है।